और बहुत सारे सुविधाएं दी जाती है इस मैरिज हॉल मे। ।

ये जामताड़ा बजार में ही स्थित है और इस फूल की दूकान में बहुत ही भीड़ होती है।

ये हारमोनियम है इसका भी एक कला होता है बजाने का।

जहाँ पे लोग अपनी बस पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।

और ये प्रकृति का एक बहुत ही अच्छा भीयू देखने को मिल रहा है जिससे कि पेड़ ऑक्सीजन दिए देते है।

और लोग यहाँ पे इलाज कराके जाते है|